यहां ऊपर की तरफ अं डिजाइन बना हुआ है पंखा लगा है।

साइड से भी इसमें डिजाइन बना हुआ है एक ए_सी लगा हुआ है यहां पर और सामने की तरफ एक--

ये किसी गली का सीन है और यहां पर अ चारों तरफ क्यारी लगी हुई है घरों के आगे।

और सामने उसके सामने अन्द बाहर की तरफ चेयर रखी हुई है और चारों तरफ इसके दीवार पे पेंट हो रखा है बहोत सुंदर--

यह एक रेस्टोरेंट का सीन है और यहां पर बहोत सारे सोफे रखे हैं बहोत--

और यहां पे ये सब कुछ बैठे हुए हैं कुछ खड़े हुए बातें कर रहे हैं।

यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है चेयर पे और वो कीबोर्ड पे कुछ कर रहा है।

ये घर का सीन है और यहा पे बहोत बड़ा इसका गार्डन है सामने की तरफ रोड जा रही है और पिंक कलर के यहां पे फूल लगे हैं और एक बहोत बड़ा पेड़ है।

ये पेंट की दुकान है और यहां पर बहोत सारे पेंट के डिब्बे रखे हुए है कुछ पाउच भी रखे हुए है और बाहर की तरफ--

ये एक मोर का सीन है और यहां पर बहोत बड़ा मोर है।

पेड़ पौधों से लदे हुए पहाड़ है और पीछे की तरफ भी पहाड़ है।

और यहां पर सामने की तरफ दीवार पे बहोत सारी पेंटिंगे बनी हुई है।

मंदिर की और पुतलों की और पेड़ पौधों की--

जार में भरी हुई और एक लेडिस यहां पे शॉल ओडके घूम रही है जो चार औरतें हैं यहां ट्रॉली रखी हुई हैं माल है ये मिनी ।

दुकान का सीन है और यहां पर जो है लैपटॉप रखा हुआ है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है यहां पर--

और पीछे की तरफ सारे खेत है और पेड़ पौधे हैं।

यह एक पार्क है और यहां पर किसी ने टेंट लगा रखा है।

यहां पर कपड़े सूख रहे हैं और दो तीन छत अह छाते लगा रखे हैं कलरफुल वाले।

यहां पे कोलगेट है और अं पारले जी के बिस्किट विस्किट सब कुछ है।

ये सेरवानी का शोरूम है और यहां पर अं दो स्टैच्यू है जो अं स्टैच्यू है जो सेरवानी पहने हुए है और एक कोट पहने हुए है।